यहाँ हमें जिम नजर आ रही है। इसमें मशीन नजर आ रही है। मशीन में वेट की प्लेट हॉल भी नजर आ रही है। एक व्यक्ति सामने की और दिखाई दे रहा है।

हरे घास के छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

कुछ व्यक्ति सामने की और खड़े हैं कुछ बैठे है जो इनको देख रहे हैं।

यहाँं एक पंछा बांदा हुआ है इसके पास इस टकने का एक डब्बा है इसके पीछे एक लकड़ी की जाली बनी हुई है इसके पास एक छोटी पलास्टिक की बाल्टी दिखाई दे रही है।

यहाँं पर हमें चेयर पर एक लड़की बैठी हुई नजर आ रही है जो फोटो क्लिक कर रही है मिरर में देखकर इसके बिहाइंड में हमें कुछ क्रीम का सेट नजर आ रहा है।

लाइट लगी है कुछ व्यक्ति बाहर की और खड़े हुए इन मूर्तियों को देख रहे हैं। एक पेड़ भी नजर आ रहा है।